ऊपर का छत दिख रहा है लाइट नीला दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक लड़का दिख रहा है लड़का बैठा दिख रहा है ऊपर अलमारी सफेद दिख रहा है दीवार सफेद दिख रहा है ।

टेबल पर एक चश्मा दिख रहा है एक पर्स दिख रहा है टेबल पर एक कैंची रखा दिख रहा है।

टेबल का रंग काला दिख रहा है ।

सामने एक रास्ता दिख रहा है पेड़ काफी हरा दिख रहा है।

सभी आदमी सड़क पर खड़ा दिख रहा है हरा पेड़ दिख रहा है बहोत सारा पत्ती दिख रहा है।

आसमान दिख रहा है हरा भरा पेड़ दिख रहा है नीचे जमीन दिख रहा है आदमी हाथी के सूँड़ पर बैठा दिख रहा है।

सामने एक स्टेज दिख रहा है।

पीछे की ओर एक सफेद दीवार भी है दो आदमी खड़ा है।

इस तस्वीर में एक नाव दिख रहा है।

नाव पर बहुत लोग बैठा है सूर्य भगवान दिख रहे हैं।

पानी बहुत ज्यादा दिख रहा है आसमान सफेद दिख रहा है ऊपर की ओर--

इस तस्वीर में बहुत लोग दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

घर के ऊपर बड़ा बोर्ड लगा है।

जमीन पर टाइल्स लगा दिख रहा है।

ऊपर बहुत पंखा लगा हुआ है।

आदमी सफेद कपड़ा पहने हुए हैं।

बाहर सब्जी दुकान दिख रहा है एक आदमी वहाँ खड़ा दिख रहा है।

ऊपर एक लाइट जल रहा है लाइट सफेद--

लड़का फोटो खींच रहा है पीछे हरा भरा पेड़ दिख रहा है।

सभी कपड़ा रैक पे रखा हुआ है।

ऊपर का छत सफेद दिख रहा है नीचे का सफेद दिख रहा है बहुत लाइट जल रहा है।

इस तस्वीर में एक मकान दिख रहा है मकान का रंग सफेद दिख रहा है आसमान सफेद दिख रहा है।

नीचे जमीन दिख रहा है बहुत हरा भरा पेड़ दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़ा दुकान दिख रहा है दुकान कंप्यूटर लैपटॉप का है।

कमरा का दीवार गुलाबी दिख रहा है।

ऊपर का छत सफ़ेद दिख रहा है नीचे का जमीन दिख रहा है लोहे का गोला दिख रहा है।

इमारत के बाहर दीवार दिख रहा है दीवार का रंग सफेद दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है।

आसमान काला दिख रहा है।

एक अलमारी दिख रहा है अलमारी पे कुछ रखा--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

एक स्टेज दिख रहा है स्टेज पे सभी लोग खड़ा दिख रहा है।

लाइट सफेद दिख रहा है नीचे का--

इस तस्वीर में हरा मैदान दिख रहा है।

पीछे दीवार दिख रहा है दीवार पे कुछ तस्वीर दिख रहा है।

ऊपर की ओर छत दिख रहा है।

छत पे बहुत सफेद दिख रहा है नीचे कुछ लोग खडा--

गेट खुला हुआ है एक गाड़ी दिख रहा है गाड़ी लगाहुआ है।

ऊपर आसमान दिख रहा है।

बहुत हरा भरा पेड़ दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक गाड़ी दिख रहा है गाड़ी चार चक्का है गाड़ी फूलों से सजा हुआ है।